ये एक बगीचा नजर आ रहा है जहाँ पे लोग हरी पत्ती को तोड़ रहे हैं और पत्ती चाय पत्ती भी हो सकती है चाय पत्ती --

ये गार्डन बहोत ही अच्छा लग रहा है यहां की ब बहोत ही अच्छे लग रहे है ये बहोत सारी कारे खड़ी है कारो के पास --

ऑफिस नज़र आ रहा है इसमें बहुत सारे पेपर रखे हुए हैं कंप्यूटर रखा हुआ है पंखे हैं खिड़कियां हैं।

लकड़ियां हैं बॉक्स बने हुए हैं और बहुत सारी आइटम रखे हुए हैं ये नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यह एक मॉल नज़र आ रहा है जिसमें बहोत सारे लोग शॉपिंग करने आये हुए हैं शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं।

और ब्लू और यहाँ हरे-हरे पेड़-पोधै नजर आ रहे हैं यहाँ का मौसम सुहाना लग रहा है बिल्डिंग बहोत आसमानी कलर की है।

और यहां पे लोग बैठे हुए हैं आराम से जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।

पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं सब नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यहाँ पे भीं पाकिट रखें मैगी भीं रखीं हुई हैं।

पूजा करने से लोगों को शक्ति मिलती है प्रार्थना पूजा करना अच्छा होता है और यहां का नजारा ब --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

एक बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है और यहां पे रहने वाले वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।